देखने में ही लग रहा है सब्जी मंडी और धनिया पता नींबू गाजर टमाटर --

जिस जगह पे घास नहीं है और अगल-बगल छोटा-मोटा पहाड़ टाइप का है लोगों को--

ये देखिए छोटा-मोटा नदी है और इसमें पुल भी है और पुल देखने में ही लग रहा है।

ये ट्रेक्टर है हल जोतने वाला आरी ये बगल में इमली का पेड़ हैं और जिस--

इधर उधर ना जाए इसलिए और लोग अपना एक्शन में है।

ये लोग बस में है और ये गाड़ी पूरा डूब गया है पानी से और बस भी नहीं जा पा रहा है पानी की वजह से पानी पूरा भर गया--

क्योंकि गेंदा का फूल का जो महमक

देखिये एक फूल पकड़ा हुआ है एक सिर्फ हाथ दिख रहा है जंगल बहुत घना-घोर लग --

ये मछलियाँ हैं और मछली हर कलर का है हर डिजाइन का है सब अलग-अलग मछली हैं। लोग खरीदने के लिए यहाँ आए हैं।

यहाँ पे देखिए मछली बेचा रहा है और यहाँ लोग खरीदने के लिए आए हुए हैं सारे कोई मास्क लगाए हुए हैं कोई नहीं लगाए हैं कोई-कोई लगाया है।